यहाँ पर एक बड़ा सा मकान जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। सामने में बहोत सारे फ़ौवारे वगेरा लगाये हुए दिखाई दे रहें हैं।

उपर में नीला आकश है। सामने एक पतली सी गली दिखाई दे रही है जिसमें कुछ लोगों को भी आते जाते देखा जा --